ऑफिस रूम छे। एकरा में प्रेजेंटेशन होवे छे और बहुत अच्छा लगे छे। एक आदमी चश्मा लगैले छे और बहुत अच्छा देखे में लगे छे।